यहाँ एक दुकान है दुकान के अंदर ये ब्लू लाइट लगा हुआ है और सफ़ेद पेंट किया हुआ है बोल्ब भी लगा हुआ है।

यहां बैंक है बैंक के अंदर--

यहां पर बहुत सारा कागज रखा हुआ है कागज जो कोई एक कागज घर बनाया है और यहां पर भी है सफेद--

पैसा की तरह ये भी छपा हुआ है बॉल भी लगा हुआ है।

पे डी_जे वीजे कुर्सी वुर्सी भी रखा हुआ हैं।

यहाँ पर एक पुल है पूल का रंग सफ़ेद है और पिलर क रंग भी सफ़ेद है और पानी पानी भी बढ़िया है।

पेड़ में व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ हैं स्कूल पिंक कलर का है।

यह एक रोड है जोकि रोड के बगल में--

जो सर में लगाने का तेल है और साबुन भी है।

यहां पर फूल फूल का पेड़ लगा हुआ है उसका बगल में स्कूटी भी है जो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में।

कुर्सी लगाके बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और एक ट्रक भी जा रही है।

इस शॉप का कलर एक पूरी व्हाइट नजर आ रहा है।